यहाँ पर हैं हरी - हरी घास ऊ हैं छोटे - छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

उसमे वाइट कलर अम का कलर पुता हुआ हैं एक नीले कलर का पेंट हैं ।

खम्बे दिखाई दे रहे हैं तार दिखाई दे रहें है।